इसके बगल में एक लड़का खरा है।

पन्नी ली हुई है एक जेंट्स है जो पैंट और व्हाइट शर्ट में है ।

यहाँ पे स्केटिंग करने वाले सब जिन्हें पसंद है वो आते हैं।

ब्लू कलर का शर्ट और --

एक रेड कलर की साड़ी में बैठी है एक बच्चा खरा --

बैठे हुए है बीच से सीढ़ी है जिसके ऊपर --

दो-तीन कटोरे रखे हुए हैं।

ये किराना स्टोर है।

बगल में छोटा सा ग्रिल भी लगा हुआ है वहाँ पे एक पोल है।